ये स्कूल का ग्राउंन है यहाँ बच्चे --

शादी का डेकोरेट करा हुआ है ऐसा लग रहा है की कुछ अ महल जैसा बनाया गया है।

ये एक रेलवे स्टेशन दिख रहा है ।

ये कुछ बच्चे हैं वो सर है जो अपने ऑ कंधों पे पीठ पे कुछ बैग टांगे हुए हैं लाल कलर के ।

छोटे बच्चों की भी चेयर कुर्सियां रखी हुई है अंदर भी बहुत सारा प्लास्टिक का सामान रखा हुआ है।

यहाँ पास में एक टेलर्स की दुकान है पटेल टेलर्स लिखा हुआ है कपड़े सिलने पर सा --